और सामने अ एक रेलिंग बनी हुई है चौकोर आकार में सफ़ेद कलर में।

और बोहत सारी कार खड़ी हुई है रेलिंग दिख रही है ऊपर बोहत सारी लाइटें लगी हुई दिख रही है।

इनमें छोटी छोटी बहुत सारी लाइटे लगी हुई हैं कलरफुल ।